बड़ा सा तालाब है जो खाफी पानी भरा हुआ है चारो तरफ पेड़-पोधे लगाए गए हैं हरी-भरी पत्तियाँ हैं।

--और नीचे की साइड पर -हरे रंग की घास है बगल में एक पुल गया ऊपर के साइड पे जो नीले रंग के और सफ़ेद रंग के सीढ़ी है ऊपर के साइड पे पर खम्भे गड़े हुए है जो लाल रंग की पीले रंग की है अगल-बगल पेड़-पौधे हरे-भरे पत्ती सफ़ेद और नीले रंग की आसमान--

पानी के ऊपर कुछ बड़े-बड़े पत्थर रखे गए हैं जो भूरे रंग के हैं पानी भरा हुआ है बगल में पूल बना हुआ है नीले रंग की पेंट की गई है ऊपर साइड पर सीलिंग पर रोड लगी हुई हैअगल-बगल पेड़-पौधे हैं जो हरे रंग के पत्तियां हैं।

एक काउंटर रखी गई है जिस पर एक मशीन रखी है बगल से एक सीधी गई है जो स्टील की बनाई गई है बगल में कोई डब्बे रखे गए हैं।

ये दो लड़के बैठे हुए हैं जो काले रंग के शर्ट पहने हुए हैं और लाल रंग के सफेद रंग के नीचे साइड पे डंबल रखा हुए है सफेद रंग की मैट बिछी हुई है नीले रंग की गुलाबी रंग की एक लडका जो हेड फोन लगाया हुआ है --

कुछ लोग खड़े हुए हैं जो छत को ढ़ाला जा रहा है रॉड लगाई गई है बगल में एक घर बना हूआ है नीले रंग का और सफेद रंग की अगल-बगल पेड़-पौधे हैं जो हरी-भरी पत्तियाँ हैं सामने एक साइड पे घर बने हुए हैं जो नीले रंग की ओर सफेद रंग की है।

बगल में एक बुजुर्ग आदमी खड़े है जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए है फूल लगाए गए हैं लाल और सफ़ेद और पीले रंग के।

साइड पे बहुत भीड़ लगा हुआ है एक लाइन बाहर से खड़े है कुछ बच्चे लेकर खड़े हुए हैं और लड़कियां खड़ी है ऊपर के साइड पे टेस्ट लगा हुआ हैजो कत्थे रंग का और पीले रंग का है।

लाइट लगाई गई है हरे रंग की और नीले रंग की सफेद रंग की लाइट लगाई है सामने एक बड़ा-सा द्वार बना हुआ है।

एक हॉस्पिटल है जो बहुत सरे बेडे रखे गई हैं नीले रंग की कपड़े बिछी हुई है एक नर्स खड़ी है जो मास्क लगा के आयी है सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुई है।

इक लखा हवा साइकल रखा हुआ है जो बहुत सारी साइकल है काले रंग की टायर है अगल-बगल कुर्सी रखी गई है ऊपर के साइड पे छोटी-छोटी साइकल है सफेद रंग की दीवाल है।